ये एक मंदिर है । जहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति अलग-अलग रखी गई है ।

और यहाँ पे बहुत सारे भगवान की मूर्ति है बजरंग बली की अलग से मंदिर बनाई गई है और एक बड़ा सा बृक्ष भी है।

ये जहानाबाद का सब्जी बाजार है । जहाँ पे बहुत तरह की सब्जियाँ मिल रही है ।

आलू पियाज टमाटर बेगन कद्दू बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है जिसे ग्राहक खरीद रहे है ओर दुकानदार बेच रहे है ।

ये पंचमुखी बजरंबली की मूर्ति है।